जैसा कि आप देख सकते है यहाँ पर एक बिल्डिंग में बर्थडे सेलीब्रेशन हो रहा है जिसके लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है इस मकान के सामने बहुत बड़े-बड़े बलून लगाये गए है और सामने एक कार्पेट भी बिछाया --

यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक मंदिर के यहाँ का एक फोटो हैं जहां पर ये आदमी खड़ा हैं पीछे की तरफ की मंदिर काफी पु--

यहा पर आप लोग देख सकते हैं ये एक घर की अंदर नीचे की तरफ चोटी सी शटर मैं एक छोटी सी जनरल स्टोर स्टैशनेरी की दुकान है।

जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेंट में माँ सरस्वती की मूर्ति विराजमान है जिसके सामने बहोत सुंदर तरिके से डेकोरेट किया गया है।

और यहाँ पर बहुत से लोग अपन-- अपने काम में कार्यत है इसमें बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था भी है इसके सामने बहोत बड़ी-बड़ी कांच की खिड़कियां भी लगी हुई है।

जैसा की आप देख सकते है की हमारे सामने एक बहोत बड़ी झील है इस झील मे कुछ लोग बोटिंग करते हुए नज़र आ रहे है।

इसके सामने एक बहोत सुंदर अम्ब्रेला लगा हुआ है और सामने की तरफ पार्किंग में बहोत सारी मोटरसाइकिल भी पार्क की हुई है।

और इनके सा फादर और एक नर भी खड़ी हुई है यहाँ चर्च मे जीसस का नीसान भी बना हुआ है।

और इसके सामने दो आदमी भी जाते हुए दिखाई दे रहे है इस बैंक के ऊपर बहोत बड़े- बड़े काँच लगे हुए है इस बैंक में लाल और सफेद कलर किया हुआ हैं।